सामने की वॉल पर ब्लू कलर का पोस्टर लगा हुआ है ।

पीछे एक रूम है स्काई ब्लू कलर का बना हुआ है जो की --